यह दृश्य में हमें श्री जु जमुना प्रसाद अम्भ्य --

यहाँ कोई जूस का दुकान दिख रहा है।

सिर्फ सब खाली-खाली बेड लगा हुआ है।

उसने यहां पे बहुत सारी नदी के बगल में हरे भरे गाछ --

और सूर्य भगवान सूर्य अस्त होने जा रहे हैं सूर्य भगवान भी दिख रहे हैं।

ज्यादा ही ज्यादा खराब हो चुका है यहाँ पे कचरे-कचरे दिख रहे है कार के पा --

वो फोटो खिचवा रहे हैं बच्चे के साथ।

यह दृश्य में हमे बड़ी सी ग्राउंड दिख रहा है।

यह दृश्य में एक बड़ी सी मकान दिखाई दे रहा है ।

हरे कलर की अंगूर सेब संतरे --